बोर्ड लगा हुआ है बोर्ड के ऊपर शीशी रखी हुई है एक टेबल बिछी हुई है भूत खड़ा भूत सो रहा है एंड एक उस पर --

इस इमेज में एक दरसूद ल ल दो लोग दरसूद लगा रहे है।

गजरा लगे है मुकुट लगा हुआ है पीली पट्टी साइड में है दो लड़के आ रहे है अं --

एण्ड एक खिड़की है बड़े बच्चे स्टील की कुर्सियों पर बैठे हुए है।